ये चित्र एक--

पीछे बैकग्राउंड में फिरोजी और गुलाबी कलर का बैकग्राउंड है आगे बाहर चेयर पे बैठे हुए लोग दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारी जिम की मशीनें दिखाई दे रही हैं जो कि अथवा काले कलर की हैं दो-तीन लोग यहां पे जिम करते हुए दिख रहे हैं।

उसके आसपास हरी बाउंड्री दिख रही है ओहीं यहां जीनों पे बहोत सारे लोग एकत्रित हैं पंडित जी हैं यहां पूजा हो रही है बहोत से बड़े बच्चे यहां पे दिख रहे हैं।

काले जूते पहने हुए पीछे हरे बड़े बड़े पेड़ जमीन पर--

जहां पे टेबल चेयर के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे है एक आदमी ने सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है।

कुर्ता और सफेद पजामे के अंदर बड़े-बड़े सारे ढोल बजाते हुए रोड के ऊपर जाते हुए दिख रहे है बहुत सारे भीड़ इकट्ठा है।

हरी घास छोटे-छोटे से पेड़-पौधे बड़े सारे बड़े-बड़े पेड़ बड़े सारे पहाड़ बिजली के तार ऊपर खुला नीला आसमान दिख रहा है।

ये चित्र एक बैंक का दिख रहा है जहां बड़ा सारा बैनर लगा है ऊपर हिंदी इंग्लिश में एच_डी_एफ_सी लिखा है।

ये चित्र एक सब्जी मंडी का दिख रहा है जहां पर कच्ची सी जमीन है।

अथवा बच्चे टेबल चेयर पर बैठे हुए अपना-अपना वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों ने--

इस चित्र में छत के ऊपर शेड पर बैठे हुए बहुत सारे देख लोग दिख रहे हैं।

अलमारियों में कई तरह के फूल बहुत सारे कलर के दिख रहे हैं लटकते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं बड़ा सारा काउंटर दिख रहा--

इस तरह एक रेस्टोरेंट के बाहर का दिखाई दे रहा है जो कि पीले और ग्रे कलर का है पीछे जमीन के ऊपर सामने की ओर बड़ा सारा पार्क दिख रहा है।

ये चित्र एक शादी के गार्डन का दिखाई दे रहा है जहां गुलाबी और लाल कलर का तम्बू दिख रहा है।

साथ में बड़े सारे हरे छोटे-बड़े पेड़-पौधे--

यहां रोड पे किसी ऑटो जाते हुए और बहोत सारे लोग फोटो लेते हुए और नजारा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं।